और घूमने एंड जंपिंग वाला झूला है ।

ये हमको एक शॉप की तरह लग रहा है ।

पत्थर का है लड़की और लड़का --